इस चित्र के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें दो कांस्टेबल --

और कांच की खिड़कियां तीन चार लगी हुई है।

इस चित्र के अंदर डामर रोड दिखाई दे रहा है।

चित्र के अंदर एक सीमेंट का मशीन दिखाई दे रहा है और--

एक बहुत बड़ी मंच दिखाई दे रही है जिसमें गणेश की मूर्ति रखी गई है।

पीछे बिल्डिंग के पीछे पेड़ लगे हैं।

इस चित्र के अंदर एक बहुत बड़ी गार्डन है जिसमें--

इस चित्र के अंदर एक चर्च के अंदर का दृश्य है जिसमें लकड़ी स--

मैट के ऊपर कुछ सामान रखे गए हैं।

बहोत सारे बच्चे नीचे बैठ के योगा कर रहे हैं।

ठेले पर बहुत सारी सब्जी रखी गई है और ऊपर पर केले टंगे हुए हैं।

गोभी नवल गोल दिखाई दे रहा है लहसुन प्याज आलू गाजर और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी दुकानें हैं नीचे पर।

कांच के गेट लगे हुए हैं बाहर पर बाइक्स खड़ी एक्टिवा खड़ी है।

पे दुकान लगी हुई है ऊपर बिल्डिंग के खिड़की खुली हुई है बाहर एक्टिवा खड़े हुए है।

एक बहोत बड़ा खुला मैदान दिखाई दे रहा हैं जिस पर कार खड़ी हुई है कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।